ये स्विमिंग पूल है उसमें पानी हैगा।

फ्लोर है जैकेट पहना हुआ एक इंसान है।

कुछ लोग चेयर्स पे बैठे हुए है सामने डस्टबीन है एक आदमी खड़ा हुआ है।

साइड से एक लोहे का रेलिंग लगा उस पे भी पेड़ लगा हुआ है।

इसमें एक कंप्यूटर रखा हुआ है टेबल है कि चेयर है।

मम्म्म ए_सीज़ लगे हुए हैं लाइट्स हैगी ऑरेंज कलर ता हुआ एक साइड से डस्टबिन है।

प्यूपिल हॉस्पिटल है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है एक होर्डिंग लगा है।

कार हैं गई एक आदमी है एक लेडी है।

एक आदमी के हाथ में मोबाइल है ग्रास है प्लांट्स हैंगे।

एक रूम है रूम के अंदर दरवाज़ा है।

फोन पे बात कर रहा है लाइट का लाइट्स है।

येलो कलर की दीलवार पुति हुई है येलो व्हाइट --

एक टेबल रखी हुई है चेयर है एक दूरी पे --

इसमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूरी पे आकाश दिख रहा है।

मिर्ची है लाल आलू है गाजर है।

हाउसेस बने हुए हैं दूर से विकेट हैगा इ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बैट है ।

एक आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है फ्लोर है।

और डोर्स हैंगे कुछ क्लॉथ्स हैं।

पानी की टंकी है एक लाइट हैगी।

इसके साथ साथ रैलिंग है रैलिंग के साथ साथ है ना लाइट्सस --